तालाब के किनारे बहुत--

कुछ भवन भी दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो एकशहर का है ।

ढलाई के काम के लिए एक लाइट की भी व्यवस्था है।

फोटो में एक सड़क को दिखाया गया है।

जी गेट और दीवाल पर--

बुक सेंटर स्टेशनरी है।

नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पुल--

नदी में बहुत सारे व्यक्ति--

फूल के मंडी को दिखाया गया है।

कुछ गेंदा के फूल की--

दोनों तरफ नियम अनुसार--

डांस एकेडमी को दिखाया गया है।

फोटो में एक किराना के दुकान को दिखाया गया है।

इसका मतलब होता है कृपया पुनः पधारे।

जिसमें एक ए_टी_एम पर --

कमरे को दिखाया गया है कमरे में एक बिस्तर लगा हुआ है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच --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

जिम में बहुत सारे जिम करने वाले--

जिम करके अपनी बॉडी दिखा रहा है।

होटल के रिसेप्शन काउंटर को दिखाया गया है।

वैवाहिक कार्यक्रम के सजावट को दिखाया गया है।

सजावट में बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्--

जयमाले के स्टेज के नीचे बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

कुछ लोग स्टेज पर खड़े नजर आ रहे हैं।

बांस के शीशे के सहारे--

हॉल में दो खिड़कियां नजर आ रही हैं।

और पाउडर के डब्बे रखे हुए हैं।

सिग्नेचर का परफ्यूम सी का परफ्यूम के_ एस का परफ्यूम --

फोटो में एक तंदूरी चाय के ठेले को दिखाया गया है।

पोस्ट ऑफिस के बगल मेंबहु--

फोटो में एक फल और सब्जी मंडी को दिखाया गया है।

ग्लोबल हेल्थ कैंप का--

और भी इत्यादि सब्जियां--

फोटो में एक कपड़ा के दुकान को दिखाया गया है।

और भी कपड़े रखे हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ गमलों में हरे-भड़े पौधे भी--

नमकीन खरीदनेआई हुई हैं।

सजावट किया गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।

जिसमें कबाब कड़ी।

बहुत सारी मोटरसाइकिलें --

जिसमें हरे-हड़े पौधे लगे हुए हैं।

कार हौंडा कंपनी का है।

छठ पूजा को दिखाया गया है।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

जीम में एक पानी की बोतल भी रखी हुई है।

मिशन के कमरे के बाहर हरे-भड़े पेड़ लगे हुए है।

कक्षा में अच्छी साफ सफाई है।

फोटो में एक कमरे को दिखाया गया है।

एक कुर्सी है एक टेबल है।

डांस अकेडमी को दिखाया गया है।

चित्र में एक पार्क को दिखाया गया है।

पार्क में बच्चो को झूलने के लिए--

पार्क में हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

कमरे में एक टेबल पर--

कुछ आभूषण पाहने हुए हैं।

मंडी में एक दीवाल पर मधुबनी पेंटिंग --

क्लासरूम में कुछ लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं।

एक कुर्सी पर पानी का बोतल रखा हुआ है।

एक छोटा बच्चा गिटार सीख रहा है।

रेस्टोरेंट में बहुत सारी कुर्सियां और टेबल --

स्टूडेंट को रंग बिरंगे गुबाड़ों --

फोटो में बैंक ऑफ बरोदा के--

सी_एस_पी ब्रांच को दिखाया गया है।

मॉल में हॉरलिक्स का पैकेट च्यवनप्राश का पैकेट कोल्ड-ड्रिंक्स --

गाराज में भगवान गणेश--

जिम में बहुत सारे जिम करने वाले उपकरण रखे हुए हैं।

नाटक करते हुए बच्चों को दिखाया गया है।

और उनकी पूजा करते हुए नजर आ रह--

जिसका नाम पिनाक डांस स्टूडियो है।

डांस स्टूडियो के गेट पे--

जिम में बहुत सारे जिम करने वाले उपकरण लगे हुए हैं।

बहुत सारे आदमी जिम करने --

उप ढांक घर का है पिन --

के किनारे बाइक और कार लगी हुई है।

अच्छी तरह से सजाया गया है।

नदी के ऊपर एक बड़ा पुल--